रेड और वाइट कलर का कुछ पहाड़ दिखाई दे रहा है एक घर भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर।

आवाज बंद कर। यहाँ पर कुछ स-क सामान दिखाई दे रहा है कुछ एक ऑटो है जिसके ऊपर कुछ सामान लेकर जा रहे हैं लोग।

यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहें हैं जो गणेश जी की एक बोहोत बड़ी मूर्ति दिखाई दे रही है गणेश जी के गणेश जी ने पैर में धोती पहनी है वो भी पिंक कलर की है।

कोई इम्म घर दिखाई दे रहा है जहां पर दो गाड़ी रखी हुई है उस एक गाड़ी का जे एक गाड़ी का कलर है वो ब्लैक और वाइट में है।

और कैमरे लगे हुए है कुछ ट्रीज वगे --